ई जमीनियो फर्श वाइटे बा। ई दु ठे कुर्सी साइड बा।

मंदिर बनल बा मंदारिया पर सीडी बनल बा सीड़िया पर आदमी मतलबी की चढ़त ता केहू उतरत ता फिर बड़ा सा पोखरा बा।

दुपहिया गाड़ी बा नदिया में कुछ पनिया जहाज बा --

तीन टेबल बा तीन टेबल पे इ जा दो टेबल पर चार चार कुर्सी बा एक टेबल पर दो कुर्सी बा।

स्टेशन वाला पटरी पे एक ही पटरिए पे एक ट्रेन बा। एक ढेर सारे आदमी बाटे और औरत बाटे लड़की बाटी।

उसे साइड गाड़ी बा ढेर सारा लाइट वाला लगत बा और लाइट सबपे लगत बाटी --

नहर टाइप में पानी संग बनल बा। के पूल बनल बा दुइ ठे खूब बड़ा सा लोग आ दुइ ठे आदमी लोकत बाटे।

खूब बड़ा सा स्कूल अ स्कूलवा में लाइका बाटे आठ दस ठे पांच छे लड़के एक किनारे बइठल बा कुछ ओ किनारे बइठल बा।

एक बड़ा सा स स्कूल बा स्कूल बनावल बा होम गेट बा गेटवा --

फील्ड वा मैच खेल आड़े तीन तिल्ली हर गाडल बा तीन तिल्ली यहर गाडल बा।

पेट्रोल टंकी बा। ए टंकीया पहिया लेके आदमी --

एक बड़ा सा पेड़ बा। पेडवा लौकत बा टाइम इनमा आसमान बा वाइट टाइम मा लउकत बा फिर नीला बा।